उसके सामने से लोहा का बाउंड्री दिया हुआ है।

और उसके नीचे फर्श भी लगा हुआ है और वहां पे बैठने के लिए भी बनाया गया है।

अनार रेड कलर का भी है। और सेव रेड कलर का भी है।

वहां पे एक बड़ा सा इस स्कूल है जो इस स्कूल दो तल्ला है।

हगने के लिए तीन स्टेप सीढ़ी भी बनाया गया है।

पास करने वाली एक लड़की है और येलो कलर का पाइप भी है और दो आदमीन भी खड़े है।

और उसके नीचे काफी सारे व्यक्ति लाइन बना कर बैंक की ओर जा रहे हैं।

इसके के चारो ओर काफी सारे पलेट भी रखे गए हैं।

पे एक बच्चों को रहने के लिए हॉस्टल है।

ऊपर सीटे का बनाया हुआ है।

यहां पे एक सरस्वती मां का मूर्ति रखा हुआ है जो काफी तरह से सजाया गया है।